यह एक बहुत सुंदर दुकान है जिसमें तीन आदमी है।

जिसमें साइड में दो नीली क्रेट रखी हुई है।

यह एक गांव का चौक--

जिसका नाम रॉक गोल्ड एकेडमी है।

आउर आस पास घास दिख रही है।

जिसमें हरे कलर के पौधे लगे हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर घर है।

और सामने एक शीशे का गेट लगा हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर पूल है।

जिसमें एक पन्नी में मिर्चा रखी की हुई है।

यह एक बहुत अच्छा स्कूल है।